और इसमें खंभे भी काफी लाइट के लगे हुए हैं।

ये यहां पे चार स्कूल की लड़कियां खड़ी है।

इसमें दो सफेद कलर के दरवाजे लगे हुए हैं।

और यहां पे मछलियों कि आंखें भी दिख रही है।